पीछे बिल्डिंग पे गुंबद बनी हुई जो रेड कलर में पुती है।

पानी का कलर ऑरेंज कलर का हो रहा है।

ये एक थिएटर की अंदर की पिक है जिससे कुछ लोग बाहर जा रहे हैं एक गेट पे खड़ा हुआ है एक बंदा --

यह एक डांस क्लास है जिसमे बोहत सारे --